पॉट फूल का साथ दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में।

बहुत सारा खाने पीने का सामान दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में।

बाकेट भी डिगने मिल रहा है इस तस्वीर मे सामने मे एक गमला भी डिगने मिल रहा है।

ग्रीन कलर का फ्लोर दिखाई दे रहा है येलो रेड कलर का वॉल नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर में एक सोफा दिखाई दे रहा है रेड सिल्वर कलर का।

रेड कलर का घर भी दिखाई दे रहा है।

उसमें बहुत सारा डिजाइन बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे में पत्थर दिखाई दे रहा है।

कमरे में बहोत सारा शीशा भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में।

सामने में गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा लाइट भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमे।

इस तस्वीर में हमें दुकान दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का सीलिंग दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में।

सामने में पेड़ पौधा भी नजर आ रहा है।

सामने में बंबू से बनाया हुआ ग्रीन वाल वाल भी नजर आ रहा है।

सामने में व्हाइट कलर का कार भी नजर आ रहा है।

बहुत सारा पेड़ पौधे में नजर आ रहा है इस तस्वीर में।

मिट्टी में पत्थर भी देखने को मिल रहा है।

येलो कलर में कुछ लिखकर भी नजर आ रहा है।

सामने में ग्रीन कलर का टेंट भी दिखाई दे रहा है एक इंसान भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में।

जैसा दो तीन ठो नजर आ रहा है।

दरवाजा को ऊपर में प्लाईवुड भी देने मिल रहा है इस तस्वीर में।

सामने में और एक बस भी दिखाई दे रहा है।

सामने में बेंच भी नजर आ रहा है।

बहुत सारा प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें लोहा लोग बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का आसमान भी नजर आ रहा है।

बेंच डेस्क भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में।

बहुत सारा खिड़की भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में।

तस्वीर में ट्रक बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

रस्ता का किनारे में बहोत सारा ग्रास दिखाई दे रहा है।